यह एक किला जैसा दिख रहा है राजा महाराजाओ का जोकि पुराना दिख रहा है ईंटें दिख रही है इसमें साफ-साफ इसको अच्छे से फिनसिग नहीं बनाया गया था ।

नीले कलर का करकट है फिर उसके आगे यहाँ सामने में ड्राम रखा हुआ है पीले कलर का और उसके बगल में पास को नीले कलर से पेंट करके बनाया गया है बाउंड्री जब ।

और स्ट्रेट लाइट भी लगे हुए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पोल भी दिख भी रहे हैं वायर भी है बहुत दूर में और वो बगल में भी मकान है एक।

नीचे इन्हें फल भी चढ़ाया गया है और नीचे पूजा करके इनका रखा हुआ है कलश ये सब और बहुत ही अच्छा लग रहा है--

यह एक थोड़ा रास्ते जैसा सामने की ओर गया है जिसके की ऊपर में लाइटे लगी हुई है दूर तक और ये करकट से बनाया हुआ है।

ये एक जू दिख रहा है जिसके की अंदर पक्षीयां है एक पक्षीयां उड़ रही है बाकी के पक्षीयां बैठे है एक पक्षी ने अपना थोड़ा चोंच खोला हुआ है।

और ये बॉउन्ड्री किया हुआ है बांस के से और इसमें बीच में खंबे है नीले कलर के और घाँस दिख रहे है नीचे---

एक साइकल चला रहे हैं और कुछ पैदल भी चल रहे हैं और ऑटो भी क्रॉस कर रहे है रोड पे से---

सामने इधर चलने की जगह है रोड पे कुछ गिरे हुए भी है और सीढियाँ दिख रही है रोड पे और एक व्यक्ति दिख रहा है ब्लैक कलर के ड्रेस में---

यहां पर घर बना हुआ है जैसा बड़ा-बड़ा मकान दिख रहा है जिसमें कुछ लोग रहते हैं बाहर कपड़े टांगे हुए हैं खिड़कियों पे---

और नीचे एक व्यक्ति फ़ोन से बात करते जा रहे है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और तार लगे हुए है और नीचे में एक और बिजली का खम्बा है।

यह एक मंदिर सा दिख रहा है जिसके बीच में घंटी लगी हुई है और घंटी में रस्सी लगे हुए हैं और सामने में बड़ा मंदिर है और उसके दाहिने साइड में एक मकान है पिंक कलर का।